यह एक पैलेस है पैलेस में हर तरह के लोग आते हैं जिनकी शादियां होती हैं।

कुछ सोफे मेज और कुर्सियां भी पड़ी है और इसके द्वार--

प्रेयर करते हैं जो कि अल धर्मो में विश्वास रख--

यह एक शादी वाला स्टेज है जहां पर दूल्हा दुल्हन बैठकर जयमाला पहनाई जाती है और --

आधे और खिलौने भी रख सकते है।

बड़े बड़े होते हैं साथ में हरे भरे ग्रास भी होती हैं।

की जाती है और उन्हें साफ और स्वच्छ बनाया जाता है।

पड़ी हैं और ग्लास भी पड़े हैं।

पिक्चर को क्लिक किया जाता है।

ये लोग फेस्टिवल को मनाते हैं।

इसमें कुछ बिस्कुट भी पड़े हैं चॉकलेट भी है।

यह एक ऑटो स्टैंड है यहां पर हर एक प्रकार के इतने ऑटो आते जाते हैं सरक--